इस पिक्चर में एक लड़का कैफे के सामने खड़ा हुआ है।

इस पिक्चर मे निम्स यूनिवर्सिटी दिख रही है।

इस पिक्चर में एक घर दिख रहा है।